केले के पत्ते भी लगे हुए चेयरे रखे हुए--

यह एक छोटा सा पार्क है दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है।

एक व्यक्ति पैसा निकाल रहा हैं एक व्यक्ति बाहर खड़ा वो जा रहा हैं पैसा लेके--

एक कार भी नजर आ रहा है जिसका लाल एक ब्लैक हैं दो गो तार हैं।

दो गेट भी लगा हुआ बाइक भी खड़ा है सको ब्लॉरो भी खड़ा हुआ है लाइट भी लगे हुए हैं।

यह एक पोस्टर दिखा था जिसमें एक्सेस बैंक का ए_टी_एम भी है।

मशीन भी दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे तरह तरह के भी--